नमस्कार openfoam में generating mesh using snappyhexmesh पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
पूर्वआवश्यकता के अनुसार आपको mesh बनाने के लिए snappyhexmeshdict में parameters के बारे में जानना चाहिए अधिक जानकारी के लिए openfoam में introduction to snappyhexmesh पर ट्यूटोरियल का अनुकरण करें
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऊबुंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1204
हम basic directory में laplacianfoam से flange के एक मैजूदा मामले को हल कर रहे हैं
अब home folder पर जाएँ और openfoam222 folder पर click करें
आप tutorials देखेंगे इस पर click करें
फिर mesh folder पर click करें
आप snappyhexmesh folder देखेंगे इस पर click करें
इस folder में flange _ 1 नामक एक नया folder बनाएँ
अब दो स्तर तक वापस जाएँ
basic folder खोलें आप laplacianfoam folder देखेंगे इस पर click करें
आप flange कैस देखेंगे folder को खोलने के लिए इस पर click करें
तीन folders 0 constant औरsystem को copy करें
अब तीन स्तर तक पीछे जाएँ copied किए गए folders को flange _ 1 folders में paste करें
अब एक स्तर तक पीछे जाएँ flange folder पर click करें आप constant और system folder देखेंगे
system folder पर click करें
इस folder से snappyhexmeshdict और surfacefeatureextractdict copy करें अब दो स्तर तक पीछे जाएँ
इन दो files को flange _ 1 folder के system directory में paste करें
अब एक स्तर तक पीछे जाएँ constant folder पर click करें इसमें trisurface नामक folder बनाएँ
अब चार स्तर तक पीछे जाएँ
resources folder खोलें
आप geometry folder देखेंगे अब geometry folder खोलें
इसमें आप flange stl gz फाइल देखेंगे इस फाइल को extract करें
flange _ 1 folder के constant directory में trisurface folder का path दें अब इसे बंद करें
command terminal खोलें और flange _ 1 के लिए path प्रविष्ट करें जैसे दिखाया गया है type करें: cd space openfoam222/tutorials/mesh/snappyhexmesh/flange _ 1 और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ
यहाँ 0 constant और system तीन folders हैं type करें cd space constant और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ आप polymesh और trisurface folders देखेंगे type करें cd space polymesh और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ आप blockmeshdict file देख सकते हैं
file के कंटेंट्स को देखने के लिए type करें gedit space blockmeshdict और enter दबाएँ
यह blockmeshdict फाइल खोलेगा इस फाइल में hex mesh और boundary patches के लिए निर्देशांक शामिल है
अब इसे बंद करें और command terminal में type करें: cd space dot dot और enter दबाएँ फिर से type करें cd space dot dot और enter दबाएँ
अब type करें: cd space system और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ आप surfacefeatureextractdict file देख सकते हैं
file का कंटेंट्स देखने के लिए type करें gedit space surfacefeatureextractdict और enter दबाएँ ध्यान दें यहाँ f e और d capital है
यह surfacefeatureextractdict फाइल खोलेगा
इस file में geometry के feature edges संबंधी जानकारी है included angle 150 लिया गया है
अब इसे बंद करें command terminal में type करें gedit space snappyhexmeshdict और enter दबाएँ ध्यान दें यहाँ h m और d capital हैं
यह snappyhexmeshdict फाइल खोलेगा इस फाइल में snappyhexmesh संबंधी सभी निर्देश शामिल हैं
snappyhexmeshdict में मैंने पहले से ही कुछ परिवर्तन किए हैं मैंने flange stl named दिया है जैसे कि stl file में है जो कि constant/trisurface directory में है
castellatedmeshcontrols में explicit feature edge refinement के लिए मैंने file को flange emesh name दिया है यह file surfacefeatureextract द्वारा प्राप्त की edge है
snappyhexmesh में शेष विवरण आवश्यकताओं के अनुसार बदले गए हैं
अब इसे बंद करें और command terminal में type करें: cd space dot dot और enter दबाएँ
type cd space 0 zero और enter दबाएँ
ls type करें और enter दबाएँ आप t file देख सकते हैं
अब type करें gedit space t और enter दबाएँ
यहt फाइल खोलेगा आप प्रत्येक patch के लिए initial conditions देखेंगे
अब हमें flange के सभी patches को initial conditions देनी होगी
patch 1 के लिए initial conditions copy करें और इसे समान file t में patch 4 के बाद paste करें
इसीतरह हम इसे patch 23 और 4 के लिए कर सकते हैं इस t file को सेव करें और इसे बंद करें
और command terminal में type करें cd space dot dot और enter दबाएँ
अब हमें geometry को mesh करने की आवश्यकता है इसके लिए command terminal में type करें blockmesh और enter दबाएँ meshing हो गया है
अब type करें surfacefeatureextract और enter दबाएँ ध्यान दें यहाँ f और e capital हैं surface feature extraction now गया है
अब type करें snappyhexmeshdash overwrite और enter दबाएँdash overwrite command पिछले folders से फाइल को कॉपी करने से रोकता है
यदि नहीं तो परिणामस्वरूप meshes अगले बार के folders के अंदर संभवत: folders 12 और 3 में हो सकता है
meshing कुछ समय लेगा अब meshing पूरा हो गया है
temperature distribution को सेम्युलेट करने के लिए हम laplacianfoam solver का उपयोग कर रहे हैं
command terminal में type laplacianfoam और enter दबाएँ ध्यान दें यहाँ f capital है
iterations running terminal window में दिखाई देगा
एक बार हल हो जाने पर geometry और परिणाम देखने के लिए parafoam type करें और enter दबाएँ यह paraview window खोलेगा
paraview window के बाईं ओर apply पर click करें geometry यहाँ दिख सकता है
object inspector menu के properties panel को नीचे scroll करें volume fields fields में t के लिए box check करें और apply पर click करें
अब active variable control dropdown menu पर जाएँ solid color को capital t में बदलें जो कि flange के लिए initial condition है
अब paraview window के ऊपरी भाग पर आप vcr controls देख सकते हैं play button पर click करें अब यह flange के temperature distribution का अंतिम परिणाम है
active variable control menu के ऊपरी बाईं ओर पर क्लिक करके color legend पर toggle करें यह temperature t के लिए colour legend है
अब मैं slides पर वापस जाता हूँ
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आते हैं नियतकार्य के रूप में
snappyhexmeshdict में कुछ parameters को बदलें
आप 0 zero folder में भी टैम्परेचर बदल सकते हैं और paraview में परिणाम देख सकते हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
video निम्न url पर उपलब्ध है:
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक हिस्सा है यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा mission एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद